घर के आस-पास पेड़ दिख रहे हैं कार दिख रही कार जो कि काली कलर की दिख रही है सफ़ेद कलर की दिख रही है झाड़ियाँ है जो कि हरी कलर की दिख रही है साइकल दिख रही है कुछ लोग दिख रहे हैं ऐसा लग रहा स्कूल ही है।

जैसा कि हमको दिख रहा है यह स्कूल जैसा लग रहा है यहाँ पर बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पर लाल कलर की दीवारे दिख रही हैं पीली कलर की भी दीवारे दिख रही हैं

यहाँ पे एक लड़की का फोटो बना हुआ उसके पास एक लड़की का फोटो बना हुआ है एक काउंटर बना हुआ है उसके ऊपर कपड़े टंगे हुए है ऊपर सफ़ेद बोर्ड है जिसमें लाल अक्षरों दुकान का नाम लिखा हुआ है बाहर चप्पले उतारी हुई है रेड कारपेट दिख रहा है अंदर लोग दिख रहे है जिसमे दो महिलाएँ दिख --

जैसा की हम देख सकते सामने बहुत बड़ी मल्टी दिख रही है। मल्टी ऑरेंज कलर की दिख रही है। इसमें मेहरून कलर के पट्टे डले हुए हैं कोने-कोने पे।

एक लेडीज़ दिख रही है जिसने सूट पहना हुआ है चोटी बनाई हुई है चोटी में रबर लगाया हुआ है सूट उसका क्रीम कलर और गुलाबी कलर का दिख रहा है जोकि बहुत सुंदर लग रहा है।

शूट वगेरा की दुकान दिख रही है। इसमें डमी पीेछे रखे हुए है जो डमी पीस है। वह छह साथ आठ नौ दस दिख रहे है। सामने ऊपर रेड कलर का बोर्ड है। जिसमे दुकान का नाम लिखा हुआ है अंदर जो आदमी दिख रहा है। जो दुकान में काम करने वाला दिख रहा है सामने रैक में सामान रखा हुआ --

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने एक दुकान दिख रही है फर्नीचर की दुकान दिख रही है सामने फर्नीचर की दुकान दिख रही है दो बाइके खड़ी हैं जिसमें से पैशनप्रो एक बाइक नीली कलर की एक अ रेड और ब्लैक कलर की जिनमें नंबर प्लेट दी हुई है दोनों पे ही --

यहाँ पे मेकेनिक के टूल्स रखे हुए ईटें रखी हुई है चार जिसके पास में ऑइल का डब्बा रखा हुआ है पास एक काउंटर बना हुआ है ऊपर लाल कलर थैली लटकी हुई है बहुत सारा सामान दिख रहा है जोकि लोहे का लग रहा है।

साइड में साइकिल दिख रही है गाड़ी दिख रही है चेयर रखी हुई दिख रही है सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिख रहा है धूप आ रही है नीचे मिट्टी दिख रही है।

पीछे दो लड़के दिख रहे हैं जिसने ग्रीन टी-शर्ट पहनी हैं। पीछे एक लड़का और एक लड़का दो लड़के दिख रहे हैं जिसने एक शर्ट चेक शर्ट और हरी टी-शर्ट पहनी हैं। पीछे और लोग दिख रहे हैं जो कि सामने की ओर दिख रहे हैं।

जैसा की हम देख सकते हैं। सामने दुकानें दिख रही हैं। पोस्ट ऑफिस दिख रहा है उसका गेट दिख रहा है। पास में दो नीले कलर की शटर लगे हैं उसके ऊपर बोर्ड ही नहीं लग रखा है उसके ऊपर एक बोर्ड है जो नीला कलर एक लाल कलर का बोर्ड है।

बाहर पीछे लोग देखने के लिए बैठे लगे हुए हैं। पीछे टेंट लगा हुआ है चारो तरफ से हरे भरे पेड़ दिख रहे ऊपर खुला आसमान दिख रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको बहुत सारी दुकानें दिख रही है जो पतरे की दुकानें दिख रही है और उसके पास में ही चार पिल्लर का एक वो दिख रहा है चारों पिल्लर आधे आधे ही बने हुए दिख रहे हैं पीछे हरा-भरा पेड़ दिख रहा है।

ईंटे पड़ी हुई दिख रही हैं पानी भरा हुआ दिख रहा है हरी-हरी घास दिख रही है पेड़ तो दूर-दूर तक दिख रहे हैं जो कि चारो बड़े नहीं ही दिख रहे यहाँ पर घरों पर प्लास्टर नहीं है पता नहीं क्यों नहीं है पर जैसा भी है अच्छा दिख --